एक ऑटो एजन्सी ने दिख रही है। उस एजन्सी ई की उपर छत के उपर बड़े से पोस्टर --

उस गेट के ऊपर कुछ कलर सा लगा हुआ हैं और गेट के अंदर काफी अंधेरा दिख रहा हैं।

और चर्च की उपर कुछ स्लाइड सी लगी है और राइट साइड पेड़ पौधे लगे है।

एक पुलिस वाला दिखाई दे रहा है पुलिस वाले के आइड-साइड बहुत सारे अह लोग बैठे हुए है कुछ लोग चैर पे बैठे है कुछ लोग खड़े है।

उस बोर्ड के ऊपर नीले अक्षरो अह मे उस दुकान का नाम लिखा हुआ है और एक व्यक्ति दिख रहा--

एक बड़ा सा एयरपोर्ट का मैदान दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारे एयरप्लेन रखे हुए है और कुछ कार दिख रही है और कुछ व्यक्ति खड़े हुए है।

एक नीले कलर की बोर्ड पर सफ़ेद अक्षरों ह मे किसी चीज का नाम लिखा है और आइड साइड से बाउंड्री हो रही है।